आप देख पा रहे होंगे की बहुत सारा यहां पे मॉल है मॉल के अंदर कपड़े रहते हैं समान रहते हैं खाने का उसके बाद बेडशीट वगैरा सोने के लिए गद्दा वगैरा ही होते हैं।

आप देख पा रहे होंगे यह एक फुटबॉलर है खिलाड़ी हैं और इसके पैर में चोट लग गए हैं इससे इसको आराम के लिए इसको मसाज दी जा रही है ।

आप देख पा रहे होंगे एक मॉल है मॉल के नाम है भारतीय वस्त्रालय।

यहां से जाते हैं और फिर फिर बाद मे ही डेली काम करते हैं रविवार को इसमें काम नहीं करना।

ये किसी दूसरे के घर में आते हैं तो रहने का पूरा बंदोबस्त देते हैं और यहां पे जो घर का जो मिलता है तो यहां पर बड़े-बड़े आदमी का ठहरने का मौका मिलता है और यही पर आदमी मेहमान नमाजी करते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं।

तो अपने जगह काम करने के लिए आते हैं --

किताब मिलती है कॉपी मिलती है और यहां पर डिक्शनरी भी मिलती है तो आपका इच्छा है मिलते हैं यहां पर लाइ लाइब्रेरी में किताबें खरीदते हैं हम लोग किताब पढ़ते हैं।

यह सभी जो है आप सब याद रख लीजिए ये सब स्टेशन का दृश्य है और जो स्टेशन का दृश्य है और स्टेशन में जब हमलोग घुसते हैं है तो ये यहां पे --